आओ जैसा की आप देख रहे है ये एक कैसा नया व्यू है गुबार स्विमिंग पूल टेंट जैसा कुछ लग रहा है पक्का यहाँ पे सब लोग रहने आए हर टेंट के बाहर दो-दो चेयर है।

स्टेज पे डांस कर रही है पोस्टर लगा हुआ और सब देख भी रहे है भी है साउन्ड वाला।